वाटर पार्क है उसमें फूल लगा दिखाई दे रहा स्लाइटें स्लाइटें लगी दिखाई दे रही है सामने ब्लू वाटर पार्क दिखाई दे रहा है ब्लू वाटर पार्क है ये।

सामने काउंटर दिख रहा काउंटर के नीचे शीशा वाला शीशे के नीचे कुछ सामान पड़ा दिखाई दे रहा है गाड़ी दिखाई दे रही है सामने बॉक्स के अंदर नीचे उसके नीचे खिलौना दिखाई दे रहा --

बच्चो के खेलने की चीज है उधर सामने पेड़ भी लगी है उधर सामने को उनके आसपास भी दिखाई दे रही है सामने बिल्डिंगे लगी हुई --

जब इस प्रकार के आइटम मिलते है सामने से निकोल वेल कार बोर्ड भी लगा हुआ है नीचे शॉप है शॉप के अंदर बाहर भी समान लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

ऐसा झूला इसमें कई सारे आदमी बैठके उधर ऊपर नीचे होता है झूले से झूलता है जो सामने वो दिखाई दे रहा --

एक पार्क दिखाई दे रहा है पार्क के अंदर एक महिला का स्टेच्यू दिखाई दे रहा है कुछ बना हुआ है वो पानी का मटके ले के सिर मे एक मटका सिर पर एक मटका हाथ में है।

जनरेटर को लाइट वाला डी_जे दिखाई दे रहा है एक छोटा ऑटो दिखाई दे रहा है बाइक खड़ी दिखाई दे रही है उधर सामने उधर भी बाइक खड़ी दिखाई दे रही है एक आदमी खड़ा दिखाई दे रहा है बाइक के पास में औ --

पार्किंग का कुछ ऐसा अलग टाइप का रास्ता दिखाई दे रहा है रास्ते के अंदर एक महिला एक बच्चा भी है महिला के पास में उधर सामने एक आदमी खड़ा है उधर सामने छोटे-छोटे ऑटो रिक्शे वाले वो भी आ रहे है।

ये अंदर बाहर पीछे में इधर एक तोप भी लगा हुआ है तोप का वो चेन है वो चेन वाला तोप भी लगा हुआ है उधर पास में पिछे एक अन्दर बिल्डिंग भी दिखाई दे रहा पुराना टाइप का तोप भी लगा हुआ है।

एक जगह है उसमें टाइल लगा हुआ हैं सामने उधर वो रेड कलर का वो कित्ता वो बंद रखा हैं कुछ सायमान को --

दोनों साइड एक साइड वो सेंटर का कुछ दिखाई सेंटर लगा हुआ जैसी गाड़ी दुकान का सेंटर लगा हुआ पीछे में कुछ दिखाई दे रहा है।

में हॉस्पिटल का दृश्य बेड दिखाई दे रहा है हॉस्पिटल वाला बेड बेड दिखाई दे रहा है उधर सामने बेड पे बिस्तर पड़ा है तकिया पड़ा है बिस्तर पड़ा है उधर सामने एक एल_ई_डी लगा है एल_ई_डी में --